जो जिम है वो अ एलो ब्लैक दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे लाइट दिखाई दे रहे है येलो कलर के --

एक टी_वी दिखाई दे रहा है और बहोत सारे पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं फ्रेम वगैरा --

पिलर्स के आजू बाजू जो है अ वुडन का कुछ सपोर्ट किया जिसके अंदर सीमेंट डालेंगे।

यहां पे एक अंकल अ सेल्फी ले रहा है जो ब्लैक कलर का पहना है टी शर्ट और उसके बाल जो है स्पाइक्स --

और एक लड़का दिखाई दे रहा है पीछे और एक टेबल दिख रहा है पीछे जिसके ऊपर बहुत सारे सामान रखा हुआ --

इसका जो गेट का कमान बनाया वो लकड़ी से बनाया हुआ है।

जो है उसके ऊपर एंट्री वगैरा लिखा हुआ है।

लेडीज का हैंडबैग दिखाई दे रहा है रेड कलर का वाइट कलर का ब्राउन कलर का मैरून कलर का --

और शूज़ जो हैं कैजुअल और फार्मल्स दिखाई दे रहे हैं।

जहाँ पे बहोत सारे चेयर्स लगाया हुआ हैं उसके सामने--

अंदर जो है मंदिर के अंदर ब ऑरेंज कलर का मंडप डाला हुआ है।

जहां पे एक टेबल लगाया है बहोत सारे और चेयर लगाया है।

यहां पे अ बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं चेयर पे।

ये स्कूल दिखाई दे रहा है जहां पे गुजराती में कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है।

अच्छे टमाटर हैं लाल टमाटर हैं और ऑरेंज कलर के भी टमाटर दिख रहे हैं।

ये उस तरफ जो है एक ऑरेंज कलर का शिखर बनाया है और वाइट कलर का नीचे पेंट है और मंदिर दिख रहा है वो।

आजू बाजू बहुत सारे शॉप्स और ब बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

यहां पे एक होटल दिखाई दे रहा है बनारसी करके लिखा हुआ है।

और एक अंकल जो है कुछ तो कर रहे है फोन मे और दूसरे अंकल जो है टेबल के पास है।

ये एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारे लोग जो है खेल रहे --

ये एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा हैन जहां पे चार लड़के डॉक्टर बैठे हुए हैं।

पीछे जो ये बहोत से बैनर दिखाई दे रहे क्योशन्स लगे हुए हैं।

वॉच है एक फैन है साइड में एक डोर दिखाई दे रहा है।

अह साइड में जो है बहुत सारे प्लेट्स रखे हुए हैं बहुत सारे आइटम्स खाने के लिए है।

डस्टबिन भी रखा है बहोत सारे लोग जो है सर्विंग के लिए खड़े भी हैं।

आजू बाजू जो है बहोत सारे ग्रास दिखाई दे रहे है जो सूखे हुए हैं।

एयरप्लेन जो है उसके ऊपर जो है रेड कलर दिख रहा है और एरोप्लेन का कलर व्हाइट दिख रहा है।

दूर पे और स्टेयर्स भी दिख रहे है चेयर्स दिखाई दे रहा--

साइड में कुछ बैठने की जगह दिखाई दे रही है फैंस दिखाई दे रहे हैं।

शॉप के सामने जो एक अंकल चल के जा रहे उनके हाथ में एक छाता है।

और ऊपर जो है अ ब्रिज बनाया है।

बीच में येलो कलर का लाइन डाला हुआ है आने जाने वाले लोग के लिए डिवाइडर जैसे।

औरतें और अ मेल जो है वो बैठे हुए हैं।

एक आंटी जो है भरतनाट्यम का पोस कर रही है।

टेबल के ऊपर बहोत सारे टिशू पेपर्स स्नीजनींग ग्लास रखे हुए है।

सारे अ ब्राउन कलर के और वो लोग खा रहे है।